की यहाँ पर एक गार्डन हे।

जहाँ पे दीये भी रखा रखे हैं व्यक्ति खड़े है।

जहाँ पर एक व्यक्ति गुफा में जाने की कोशिश कर रहा है।

इस इमेज में दिखाई दे रहा है।

जो की व्यक्ति को पुरस्कार मिले हैं।

और एक बड़ा वो बड़ा-सा हवेली बना हुआ है जो की आस-पास --

बात भी कर रहे हैं यहाँ आस-पास जगह भी पूरी पत्थर की है।

ये रखे हुए है अलग-अलग तरीके से जो कि ब्लैक --

आसपास आसमान भी नजर आ रहा है बहुत सुंदर नजारा है।

ये घर है जो की बहुत पहले से बंद पड़ा हुआ है।

ये एक व्यक्ति है जो की आस-पास इसके बोहोत सारा समाने भी रखा है।

ये जगह है जहां पे टिकटे दिए जाते है और रिक्शा भी है यहां आस-पास --